यह किसी कॉलोनी में बनाया हुआ है छठ महोत्स्व का कार्यक्रम है छठ घाट बना हुआ है केले के पेड़ लगे हुए हैं और ऐ व्रती लोग जल में खड़ी हैं पीछे लोग बैठे हुए हैं और उधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और पीछे पार्क बच्चे भी पार्क में बैठ ए देख रहे हैं गार्जियन लोग सब छठ के |

यह एक नदी का दृश्य है सनसेट टाइम का है और दो बोटे खड़ी है जहां एक ए बोटिंग के लिए है और दूसरा लगता है जैसे इसमें बालू वगैरा का ढुलाई होता है। निकासी उसमें लाकर अ अ अम्म मजदूर लोग निकालते हैं और बेचते वगैरा है ऐसा प्रतीत हो रहा है।